ये चित्र एक समारोह का दिख रहा है जहाँ काफी सारी महिलाएं हैं पेड़ लगे हुए हैं आसमान दिख रहा है।

बिजली का खम्बा और तार दिख रहे हैं।